और बहोत सारी जो है मालाए यहाँ पर लाइन से लटक रही है।

छोटी-छोटी नज़र आ रही है और छोटे-छोटे पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं।

यहाँ पर हमें बस देख सकते हैं जो की पीले कलर की है बस के --

में जो फूल लटके हुए है और बहुत सारा डेकोरेशन है यहाँ पे।

क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है जो जीसस क्राइस्ट को प्रदर्शित करता है बहुत सारी भीड़ हैं और पास में बहुत --

जूते रखे हुए हैं बाटा कंपनी के जो और बहुत सारी लाइट और फुग्गे यहाँ पे लगे हुए हैं।

पूरा आस-पास पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं और ऊपर एक खुला आसमान दिख रहा है।

यहाँ पर हमे एक शॉप दिखाई दे रही है और --

आ रहा है और यहाँ पे चट्टानें हैं चट्टानों से होता हुआ पानी नीचे की ओर आ रहा है।

हमें यहाँ विछन करते हुए नज़र आ रहे हैं।

और पाल के पास में एक छोटा सा घर नज़र आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए खड़े हुए नज़र आ रहे हैं।

यहाँ पर एक चट्टान दिख रही है उस चट्टान पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने ब्लैक कलर का शर्ट ब्लैक कलर की पैंट पेहन रखी है।